ग्राउंड में कुछ चौक का कुछ नजर आ रहा है ग्राउंड के आस-पास सफ़ेद कलर का कुछ निशान नजर आ रहा है कुछ लोग ग्राउंड अंदर खड़े हुए हैं ग्राउंड के पीछे साइड पेड़ लगे हुए है।

मंदिर बीच में बना हुआ है आसपास बहुत सारी हरियाली है ये मंदिर बिल्कुल बीच में है।

यहाँ पर एक किला नजर आ रहा है। किले के अंदर तीन बाजार नजर आ रहें हैं।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट नजर आ रहा है गेट के ऊपर एक बहुत बोर्ड लगा हुआ है।

बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है हवाई अड्डा भागलपुर।

मीनार के नीचे ढलान है।

यहाँ पर शादी चल रही है यहाँ एक पर लाइटें लगी हुई हैं बहुत सारे परदे लगे हुए हैं।

ऊपर लोहे की स्पोर्ट लगी हुई है और किले के नीचे बहुत बड़ा तालाब है तालाब मे कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे है।